एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहें है ऊपर सीलिंग है उसमे ट्यूबलाइट लगी हुई है।

यहाँ बिल्डिंग नजर आ रही है का जिसमें काफी बच्चे खड़े हुए हैं दो बिल्डिंगे है पीछे सफेद रंग की बिल्डिंग है साइड में नारंगी रंग की बिल्डिंग है।

उन्होंने सफेद कपड़े पहने हैं उसके हाथ में एक कलर का बोम है पीछे लाल रंग--

यह एक छत बन रही है इसमे एक व्यक्ति छत बना रहा हैपीछे रेत रखी हुई है।

यह एक डैम की तस्वीर है जिसमे साइड मे ब्रिज दिख रहा है डैम के अंदर एक दीवार नज़र आ रही है इसके पीछे---